यह जिम का सामान है।

फोटो में एक लड़का है ब्लू शर्ट और जींस और एक लड़की है।

वो दोनो फोटो लिए दो पत्थर के बीच में।

इंट्रेंस का में फ्लावर भी डेकोरेट करके बहुत का सा सुंदर से।

डाइनिंग टेबल है जोकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन लोग के लिए है।

और वॉल पे जिसपे बहोत सुंदर सा किया गया है।

काउंटर बहुत सुन्दर है लाइट वाइट बहोत सुन्दर से रखा है।

चे चेयर में शायद सोफा लगा के काफी सुंदर सोफा में भी एक सेलफोन है।

के पीछे एक घर दिखाई दे रहा है जो कि पिंक कलर का है।